फोटो है जहां पर हमें एक सुंदर सा पारक दिखाई दे रहा है और यहां एक--

और यह एक स्कूल का फोटो है।